एक ग्रीन कलर का बैग भी दिखाई दे रहा है।

आगे मे बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा सफेद कलर का कार्टून बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक रूम है।

दुकान के आगे में बहोत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

फ़िर बहोत सारा कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में बहुत सारा लाइट बल्ब भी है।

बहुत सारा टेबल भी दिखाई दे रहा है।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

फैन भी दिखाई दे रहा है।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

घर का आगे में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में तीन फैन दिखाई दे रहा है।

दुकान में बहुत सारा शैंपू दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में दो टेबल दिखाई दे रहा है।

बीच में बहुत सारा आदमी लाइन करके दिखाई दे रहा है।

गेट का बाहर में एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा बैक भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में दुकान दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहुत सारा बाती दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

टेबल में बहुत सारा स्ट्रॉ भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में पानी भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर मे बहुत सारा फाइल है।

सीलिंग मैं बहुत सारा लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है।